नमस्कार दोस्तों
एक्सेसिंग पीसेस ओएफ अरेज अरैज़ के टुकड़ों को एक्सेस करने पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप दोनों वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल अरैज़ के प्रत्येक एलिमेंट्स को एक्सेस और बदलने में अरैज़ के रोज़ और कॉलम्स को एक्सेस और बदलने में
स्लाइसिंग और स्ट्राइडिंग का इस्तेमाल करके एक अरै को एक्सेस और उसके टुकड़ों को बदलने में
और सरल अरै परिचालनों का इस्तेमाल करके अरैज़ में चित्र रीड करने में और उनपर संसाधन करने में सक्षम होंगे इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि अरैज़ के साथ शुरुआत पर ट्यूटोरियल को पूर्ण करें
अब टर्मिनल खोलें और इपिथॉन हाइपेन पाइलैब टाइप करें
एक उदाहरण के साथ शुरू करते हैं
मानते हैं नमूने अरैज़ के रूप में हमारे पास दो अरैज़ आ और सी है जिन्हें हम इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल करेंगे
सबसे सरल चीज़ एलिमेंट्स को एक्सेस करने के साथ शुरू करते हैं
साथ ही इसे पहले वन डायमेंशनल अरै आ के साथ शुरू करें और फिर वही टू डायमेंशनल अरै के साथ करें

अरै आ में एलिमेंट 34 को एक्सेस करने के लिए हम कहते हैं आ ओएफ 2 ध्यान दें हम स्क्वैर ब्रेकेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं
अतः टाइप करें आ स्क्वैर ब्रैकेट में 2 और एंटर दबाएँ
लिस्ट्स की तरह अरैज़ में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है
अतः 34 तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स 2 है
अब सी से एलिमेंट 34 एक्सेस करते हैं
यह करने के लिए हम लिखते हैं सी ओएफ 23
अतः टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 2 कॉमा 3 और एंटर दबाएँ
34 तीसरे रो और चौथे कॉलम में है और चूँकि इंडेक्सिंग शून्य से शुरू होती है इसलिए रो इंडेक्स 2 है और कॉलम इंडेक्स 3 है
अब हमने अरै के एक एलिमेंट को एक्सेस किया चलिए इसे बदलते हैं
हम Aऔर Cदोनों में 34 को माइनस 34 में बदलेंगे
यह करने के लिए हम एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद उसकी नयी वैल्यू निर्धारित करते हैं
अतः टाइप करें आ स्क्वैर ब्रैकेट में 2 माइनस 34 और सी के लिए टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 2 कॉमा 3 माइनस 34 अपने ऑपरेशंस को जाँचें
टाइप करें आ स्क्वैर ब्रैकेट में 2 एंटर दबाएँ फिर सी स्क्वैर ब्रैकेट में 2 कॉमा 3 चूँकि अब हमने एक अकेले एलिमेंट को एक्सेस और बदल दिया
एक समय में एक से अधिक एलिमेंट को एक्सेस और बदलते हैं पहले रोस और फिर कॉलम्स
सी की एक रो मानिए तीसरी रो को एक्सेस करते हैं
हम यह लिखकर करते हैं सी स्क्वैर ब्रैकेट में 2 और एंटर दबाएँ
हम सी के अंतिम रो को एक्सेस कैसे करेंगे
हम लिख सकते हैं टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 4 और एंटर दबाएँ
या जैसे लिस्ट्स के साथ हम ऋणात्मक इंडेक्सिंग इस्तेमाल करते हैं और लिखें सी ब्रैकेट में 1 अब हम सी स्क्वैर ब्रैकेट में 1 स्क्वैर ब्रैकेट में फाइव ज़ेरोस इस्तेमाल करके और एंटर दबाकर या सी स्क्वैर ब्रैकेट में 10 इस्तेमाल करके अंतिम रो को सभी शून्यों में बदल सकते हैं
अब हम सी के एक कॉलम को एक्सेस कैसे करेंगे
अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस करने में निर्दिष्ट करने के लिए कॉमा के बाद कॉलम दूसरा पैरामीटर है
पहला पैरामीटर आ सेमी कोलोन आ कोलोन से बदल दिया गया है
यह निर्दिष्ट करता है कि हम एक विशिष्ट एलिमेंट के बजाय उसी डायमेंशन के सभी एलिमेंट्स को चाहते हैं
हम तीसरे कॉलम को यह टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं सी स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन कॉमा 2 और एंटर दबाएँ
यहाँ विडियो रोकें निम्न अभ्यास की कोशिश करें
सी के अंतिम कॉलम को शून्यों में बदलें
हल के लिए टर्मिनल पर जाएँ
सी के अंतिम पूरे कॉलम को शून्यों में बदलने के लिए हम लिखते हैं सी स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन कॉमा माइनस 1 0 और एंटर दबाएँ
चूँकि आ वन डायमेंशनल है आ के रोस और कॉलम्स अधिक अर्थ नहीं बनाते हैं
इसके पास केवल एक रो है और आ ओएफ कोलोन पूरा आ देता है
अतः टाइप करें आ स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन और एंटर दबाएँ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
आ को 11 12 13 14 15 में बदलें
इसके हल के लिए टर्मिनल पर जाएँ
आ को बदलने के लिए हम लिखते हैं आ स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन स्क्वैर ब्रैकेट में 11 कॉमा 12 कॉमा 13 कॉमा 14 कॉमा 15 और एंटर दबाएँ
अब हम जानते हैं कि एक अरै की रोस और कॉलम्स को एक्सेस कैसे करें
हम एक अरै के अन्य टुकड़ों को एक्सेस करना सीखेंगे
इस उद्देश्य के लिए हम इमेज अरैज़ इस्तेमाल करेंगे
अरै में एक इमेज को रीड करने के लिए हम इमरीड कमांड इस्तेमाल करते हैं
हम इमेज स्क्वेयर्स डॉट पंग प्रेजेंट इन स्लैश होम स्लैश फोसे इस्तेमाल करेंगे
हम पहले ओएस में उस पाथ में जायेंगे और देखेंगे इमेज में क्या है
अब डेटा को अरै आई arrayमें स्क्वेयर्स डॉट पंग में रीड करते हैं
टाइप करें Iimread ब्रैकेट में सिंगल क्वोट स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश स्क्वेयर्स डॉट पंग हम इमशो कमांड का इस्तेमाल करके इमेज का कंटेंट्स देख सकते हैं
आई में क्या रीड हुआ है यह देखने के लिए हम लिखते हैं इमशो ब्रैकेट में आई
अतः टाइप करें इमशो ब्रैकेट में आई और एंटर दबाएँ
हम सफेद और काला नहीं देख सकते क्योंकि पाइलैब ने सफेद और काले को अन्य रंगों में मैप कर दिया है
इसे हम अन्य कलर मैप का इस्तेमाल करके बदल सकते हैं
यह देखने के लिए कि आई वाकई में केवल एक अरै है हम लिखते हैं प्रोम्प्ट पर आई अतः टाइप करें आई हम देखते हैं कि एक अरै प्रदर्शित होती है
किसी भी अरै का डायमेंशन जाँचने के लिए हम डॉटशेप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं
अतः टाइप करें आई डॉट शेप जैसा कि हम देख सकते हैं हमें इमेज की डायमेन्शन्स मिल गयी है
इमेजsquares डॉट png की डायमेंशन 300एक्स300 है
ट्यूटोरियल के इस भाग का उद्देश्य होगा इमेज का ऊपरी बायाँ चतुर्थ भाग पाना
यह करने के लिए हमें अरै के कुछ रोस और कुछ कॉलम्स को एक्सेस करने की आवश्यकता है
सी के तीसरे कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम कहते हैं सी स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन डॉट 2 सारतः हम सी के तीसरे कॉलम की सभी रोस को एक्सेस कर रहे हैं
अब इसे सी के तीसरे कॉलम की पहली तीन रोस को एक्सेस करने के लिए बदलते हैं
हम लिखते हैं सी स्क्वैर ब्रैकेट में 0 कोलोन 3 कॉमा 2 इंडेक्स्ड 0 टो 3 से रोस के एलिमेंट्स देता है 3 सम्मिलित नहीं है और कोलम्न इंडेक्स्ड 2
ध्यान दें स्लाइस जो हमें मिला है उसमें कोलन से पहले इंडेक्स को सम्मिलित किया है और उसके बाद के इंडेक्स को नहीं सम्मिलित किया है
यह काफी रेंज फंक्शन जैसा है जहाँ रंगे एक लिस्ट देता है जिसमें ऊपरी सीमा या स्टॉप वैल्यू सम्मिलित नहीं है
अतः टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 0 कोलोन 3 कॉमा 2 और एंटर दबाएँ
अब यदि हम इंडेक्स 2 की रो को और इंडेक्स 0 से 2सम्मिलित कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं हम लिखते हैं अतः टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 2 कॉमा 0 कोलोन 3 और एंटर दबाएँ
यहाँ विडियो रोकें अभ्यास की कोशिश करें और विडियो पुनः चलायें
पहले सी से 22 23 एलिमेंट्स को प्राप्त करें
फिर सी से एलिमेंट्स 11 21 31 41 प्राप्त करें
और फिर तीसरा और अंतिम एलिमेंट्स 2131 41 0 प्राप्त करें
अब टर्मिनल पर जाएँ
अतः टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 1 कॉमा 1 कोलोन 3 और एंटर दबाएँ
सी 1 1 इस टो 3 एलिमेंट्स 22 23 देता है
सी स्क्वैर ब्रैकेट में 0 कोलोन 4 कॉमा 0 एलिमेंट्स 11 21 31 41 देता है
सी 1 कोलोन 5 0 एलिमेंट्स 21 31 41 0 देता है
ध्यान दें जब रेंजेस निर्धारित कर रहे हों तो यदि आप शुरू से शुरुआत कर रहे हैं या अंत तक जा रहे हैं तो अनुरूपी एलिमेंट बहिष्कृत हो सकते हैं
अतः पिछले उदाहरण में 11 21 31 41 पाने के लिए हम केवल कह सकते थे
अतः टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 1 कोलोन 5 कॉमा 0 और एंटर दबाएँ
हमें एलिमेंट्स 21 31 41 0 मिलते हैं
यदि हम दोनों इन्डेक्सेस छोड़ दें तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं हमें स्लाईस अंत से अंत तक मिलता है
अतः टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन 4 कॉमा 0 और एंटर दबाएँ
और अगला टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 1 कोलोन कॉमा 0 और एंटर दबाएँ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
सी से एलिमेंट्स 23 24 कॉमा 33 34 प्राप्त करें
अब हल के लिए टर्मिनल पर जाएँ
कमांड टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 1 कोलोन 3 कॉमा 2 कोलोन 4 हमें अपेक्षित एलिमेंट्स देगा
अब हम चित्र का ऊपरी बायाँ भाग प्राप्त करना चाहते हैं
इसे करने के लिए हम क्या करेंगे
चूँकि हम जानते हैं चित्र का आकार 300 है हम जानते हैं कि हमें पहली 150 रोस और पहली 150 कॉलम्स प्राप्त करने की आवश्यकता है
Icolon 150 कॉमा कोलोन 150 हमें चित्र का ऊपरी बायाँ कोना देता है
अतः टाइप करें आई स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन 150 कॉमा कोलोन 150 और एंटर दबाएँ
चित्र के रूप में जो फॉर्म में जो हमने स्लाईस प्राप्त किया उसे देखने के लिए हम इमशो कमांड इस्तेमाल करते हैं
अतः टाइप करें इमशो स्क्वैर ब्रैकेट में आई स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन 150 कॉमा कोलोन 150 और एंटर दबाएँ
अभ्यास जिसे हम अभी करने जा रहे हैं उसके साथ स्क्वैर को चित्र के बीच में प्राप्त करें
अतः कृपया यहाँ विडियो रोकें
अब हल के लिए टर्मिनल पर जाएँ
कमांड टाइप करें
अतः हमें चित्र का केंद्र मिल गया
हमारा अगला उद्देश्य है एक बहुत सरल तरीके का इस्तेमाल करके चित्र को कम्प्रेस करना
अतः टाइप करें इमशो स्क्वैर ब्रैकेट में आई और स्क्वैर ब्रैकेट में 75 कोलोन 225 कॉमा 75 कोलोन 225 और एंटर दबाएँ
सिद्धांत है कि चित्र के एकान्तर रोस और कॉलम्स को बहिष्कृत करें और उसे सेव करें
इस तरह हम मूल डेटा का एक चौथाई डेटा कम कर रहें हैं किन्तु थोड़ा दृश्य सूचना खो रहे हैं
हम छोटी अरै सी का इस्तेमाल करके पहले प्रगति का सिद्धांत सीखेंगे
मानिए हम केवल विषम रोस और कॉलम्सपहली तीसरी पाँचवी को एक्सेस करना चाहते हैं
हम यह सी स्क्वैर ब्रैकेट में 0 कोलोन 5 कोलोन 2 कॉमा 0 कोलोन 5 कोलोन 2 टाइप करके कर सकते हैं
यदि हम स्पष्ट होना चाहते हैं तो हम कहते हैं सी कोलोन कोलोन 2 स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन कोलोन 2 यह रेंज फंक्शन में निर्दिष्ट कार्य के काफी समान है
यह एलिमेंट्स को एक्सेस करते समय उछाल या स्टेप को निर्दिष्ट करता है जिसमें जाना है
यदि कोई स्टेप निर्दिष्ट नहीं है तो डिफ़ॉल्ट 1 कल्पित करते हैं
टाइप करें सी स्क्वैर ब्रैकेट में 1 कोलोन कोलोन 2 कॉमा कोलोन कोलोन 2 हमें एलिमेंट्स 21 23 0 कॉमा 41 43 0 मिलते हैं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
निम्न प्राप्त करें
12 042 0 फिर ब्रैकेट में 12 13 14 0 0 0 हल आपके स्क्रीन पर है
अब हम जान गये हैं कि अरै में अधिक प्रगति कैसे करें हम आई में चित्र के एकान्तर रोस और कॉलम्स को बहिष्कृत कर सकते हैं
इस चित्र को देखने के लिए हम लिखते हैं आई स्क्वैर ब्रैकेट में कोलोन कोलोन 2 कॉमा कोलोन कोलोन 2
तो वास्तव में कोई भी अंतर देखने के लिए अधिक डेटा नहीं है किन्तु ध्यान दें यह प्रदर्शित करने के लिए कि एकान्तर रोस और कॉलम्स बहिष्कृत हो गयी हैं स्केल कम हो गया है
यदि आप विचारपूर्वक ध्यान दें आप किनारों के पास कुछ धुंधलापन देखेंगे
इस प्रभाव को अधिक साफ़ देखने के लिए स्टेप को 4 तक बढाएं अतः टाइप करें इमशो ब्रैकेट में आई स्क्वैर ब्रैकेट के साथ कोलोन कोलोन 2 कॉमा कोलोन कोलोन 2 और एंटर दबाएँ
फिर टाइप करें इमशो फिर ब्रैकेट में कोलोन कोलोन 4 और फिर से कोलोन कोलोन 4 इसको मौजूदा पिछले कमांड से भी बदल सकते हैं
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सिंगल और मल्टी डायमेंशनल अरैज़ के साथ कुशलतापूर्वक कार्य करना सीखा
प्रत्येक एलिमेंट्स को इंडेक्स नम्बर्स के जरिये एक्सेस किया और बदला
रो और कॉलम नम्बर्स निर्दिष्ट करके अरैज़ के रोस और कॉलम्स एक्सेस किये और बदले
अरैज़ पर स्लाइस और अधिक प्रगति की
अरैज़ में चित्रों को रीड किया और उनके साथ कुशलतापूर्वक कार्य किया
यहाँ हल करने के लिए आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण सवाल हैं
1अरै आ array12 15 18 21 दी है कैसे हम एलिमेंट 18 एक्सेस करेंगे
अरै ब array10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 40 41 42 43 दी है
एलिमेंट्स 21 22 कॉमा 31 32 प्राप्त करें
दी गई अरै को सी array10 11 12 13 20 21 22 23 सी array10 11 10 11 20 21 20 21 में बदलें
और चलिए उत्तरों को देखते हैं अरै आ में एलिमेंट 18 के पास इंडेक्स नम्बर 2 है
अतः हम इसे इस तरह एक्सेस करते हैं आ ओएफ 2 उत्तर है आ स्क्वैर ब्रैकेट में 2
अरै ब में मध्य के चार एलिमेंट्स को प्राप्त करने के लिए हम लिखते हैं ब ओएफ 1 कोलोन 3 कॉमा 1 कोलोन 3 हम स्लाइसिंग और अधिक गति का इस्तेमाल करके अरै सी के एलिमेंट्स को बदल सकते हैं Bcolon 2 2 colon Bcolon 2 कोलोन 2 आशा करते हैं कि इस ट्यूटोरियल का आपने आनंद लिया और इसे लाभदायक समझा
धन्यवाद